इस फोटो में मुझे स्कूटी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे रॉड दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे सीमेंट के ईंटे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे अंडे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कपड़े की मशीन दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे एंबुलेंस दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे सूट दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बेहता हुआ झरना दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे कुछ पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे ये कैमरा दिखाई दे रहा है।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

एक फोटो में मुझे बिजली के खंभे और तार दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है।